दरवाजा बहोत तनी गो का है और यहाँ पर सदर हॉस्पिटल बेगुसराय लिखल हेय।

इ दुर्गा में बहोत अच्छा लग रहले और --

शिव ज्वेलर्स है यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया है ज्वेलर्स निर्माता एवं बिक्रेता ।